ये तस्वीर सैलून का लग रहा है।

वो अभी बन रहा है।

घर के सामने एक छोटा सा यल्लो कलर का घर भी दिख रहा है।

आसमान पर बादल छाए हुए हैं।

बहुत सारे पेड़ भी है।

वो लोग व्हाइट कलर की साड़ी पहने हुए हैं और गले पे एक माला पहने हुए हैं क्रॉस वाला।

पीछे जिज्स की मूर्ति है जो पत्थर से बना हुआ है।